चारो तरफ सूर्य का रौशनी आ रहा है।

यहाँ एक गेट है ।

और सी अ छड़ है ऊपर आसमान है नीचे पानी भी है।